दो रोड गए हुए हैं बगल से।

और डेकोरेट बहोत सुंदर दिख रहा है।

तीन चार गाड़ियां भी है एक साइकिल भी रखाया हुआ है।

एक एक बॉल फेंकने के लिए खड़ा हुआ है तो दूसरा--

बगल में एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

बहोत से पेड़ पौधे सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं।

एक साड़ी का दुकान लग रहा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।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

बोट्स पर कुछ लिखा हुवा भी हैं।

हरे भरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में गाड़ियां भी रखाई हुई है।

एक दूसरे से बात कर रहे हम--

यहां तो अंकल अपनी सेल्फी ले रहे हैं।

बड़ा सा बैलून रखाया हुआ है।

पेंट की दुकान जैसा दिखाई दे रहा है।

बगल में बिल्डिंगे भी दिख रही है।

यह एक कपड़े की दुकान जैसा दिख रहा है।

और यहाँ एक बच्ची डमी में खड़ी हुई है।